ग्लास रखे है जग रखा हुआ है।

वहां साइड में दिवालों में फोटो लगी हुई है।

और दो चार पेड़ लगे हैं सामने खंबा और घर बने हुए हैं।

और सोफा पड़ा है मैरून कलर का लम्बा।

और यहां पर छोटे छोटे पौधे पन्नी में लगे हुए हैं बहुत सारे हैं।

और सामने दो लोग जा खड़े हैं।